ये जो तस्वीर है तस्वीर में जो है दिखाया गया है दर्शाया गया है ये एक अ --

बड़ा है और कंकाल है लग रहा है कुछ मेडिकल कॉलेज में कुछ डिस्प्ले के लिए रखा गया है जो छात्रों को सीखने के लिए--

ये जो तस्वीर है तस्वीर में एक सोफा सेट दिखाया गया लकड़ी का जो बहुत ही खूबसूरत है फर्निश किया हुआ है।